एक औरत लाल रंग की साड़ी पहन के खड़ी हुई है।

ये एक जगह का चित्र हे जिसमें कईं सारी साइकिल्स खड़ी हुईं हें ।

यह एक जगह का चित्र है।

कुछ लोग खड़े हुए हैं। आसमान दिख रहा है।

ये एक जगह का चित्र है। जिसमें दो आदमी --

ये एक जगह का चित्र है।

एक जगह का चित्र है। जिसमें तीन मूर्तियाॅं बनी हुई हैं।

हरे रंग के पेड़ दिख रहे हैं। आसमान देख रहा है।